अब इसमें कह सकते हैं और इसके नीचे जो लिखा हुआ है खाता बुक के नाम लिखा हुआ है।

एक येलो कलर में और ऑरेंज कलर में हैं और पौधे में फ्लावर है। रेड कलर में --